मकान के नीचे दो गाड़ियां खड़ी है।

यह एक कमरा है कमरे के ऊपर पंखे लगाए गए हैं और कुछ लाइटें लगाए गए हैं।

कुछ परदे टांगे गए हैं और कुछ कपड़े जमीन में बिखरे हुए हैं।

ए_सी भी लगाए गए हैं और टी_वी भी लगाए गए हैं।

यह एक कमरा है कमरे के ऊपर बहुत सारे लाइटे लगाए गए हैं।